आस पास का माहौल बहुत शांत है और पेड़-पोधे लगे हुए हैं | एक दुकान है जिसको काला पन्नी से ] ढक दिया गया है ।

रिलायंस के झंडे लगे हुए हैं और रिलायंस का लोगो बनाया गया है और पेट्रोल पंप पे बहुत सारे आदमी है और पेट्रोल भरा जारा है।

यह किसी रेस्टोरेंट का फ़ोटो है और दोनों तरफ पेड़ लगे हैं साथ में है एक हैं और टेबल पर टेबल पर चार प्लेट है चार कुर्सी है एक टेबल है और टेबल पर टिश्यू पेपर रखा गया है और एक बुके है और चार गिलास है।